यहां पे एक नाव भी है और उस नाव पे कुछ लोग बैठे हुए भी हैं।

इधर कुछ लड़के फोटो खींच रहे हैं।

हमें इस फोटो में एस_बी_आई बैंक का एक बैनर नजर आ रहा है।

और इधर साइड एस_बी_आई ए_टी_एम का भी बैनर लगा हुआ है।

सामने की तरफ एक ग्राउंड बना हुआ है।

इधर साइड दो आदमी कैरेट में कुछ भर रहे हैं।

कुछ लोग उसे दीवार पर बैठ कर योगा कर रहे हैं।

यहां पे बहुत सारे रंग बिरंगे फूल लगे हुए हैं।

पीछे के साइड एक एल्बम लगा हुआ है।

हमें इस फोटो में बहुत तरह के रंग बिरंगे वा डिजाइन दार गमले दिखाई दे रहे हैं।

उसके ऊपर ए_सी फैन भी रखे हुए।

कुछ लोग रोड पे चलते हुए नजर आ रहे हैं।

जहां पे बहुत सारी लाइट्स लगी हुई है।

हमें इस फोटो में रेस्टोरेंट का दृश्य दिखाया गया है।

सामने इस फोटो में एक बेकरी नजर आ रही है।

जिस पर बंदीपुर टाइगर रिजर्व लिखा हुआ है।

इसके पीछे बहुत सारी बिल्डिंग्स भी बनी हुई है।